और सीलिंग का ऊपर में लाइट लगाया हुआ है।

और बिल्डिंग के बाहर लंबा सा वाल दिखाई दे रहा है।

और टेबल को ऊपर सफेद रंग का फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

और पानी के किनारे भी बहुत सारा आदमी है।

और बहोत सारा लाइट पोल्स भी लगाया हुआ है।

और आसमान में बहुत सारा बादल दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में दो घर दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक काला कलर का स्पीकर दिखाई दे रहा है।

और तीन कार भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजा के आगे में फ्लावर पॉट रखा हुआ है सफेद रंग का।

और रेस्टोरेंट के पीछे में डेंजर का साइन लगाया हुआ है।

और आदमी लोग बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

और लोहा का पोस भी दिखाई दे रहा है।